नीचे ईटो की दीवार भी दिखाई दे रही है।

और पानी के अन्दर कुछ लोग खड़े हुएं हैं।

अ कुछ फूल वगेरह रखें हैं जो लाल कलर के हैं दीपक जल रहा है।

यहाँ पे एक बड़ा सा मंदिर बना हुआ दिखाई दे रहा है।

नीचे लाल मिटटी हे सामने पेड़ दिखाई दे रहे हैं ।

यहाँ पे कुछ लोग हैं जो रोड पे बड़े बड़े ढोलक को लेकर जा रहे हैं जो ढोले हैं वो लकड़ी के हैं और इनके सर पे इन्होंने --

औरते भी हैं जिन्होंने भी सर पे कुछ पहन रखा है।

मंदिर का जो कलर है हल्का सा गुलाबी दिखाई दे रहा हैं सूरज की रौशनी में --

यहाँ पे एक ऐ .टी.एम है जिसका गेट खुला हुआ है और उसके अन्दर एक इंसान खड़ा हुआ है।

सामने भी गेट के आकार की दीवारे बनी हुई हैं जिनके कलर निकले हुए हैं ।

बिजली का खम्भा लगा हुआ है।

कुछ लेडीज है जो खड़ी हुई हैं।

और तिरंगा झंडा लगा हुआ है एक पेड़ दिखाई दे रहा है उपर नीला आसमान दिख रहा हैं ।